और तो एक बाइक खड़ी है। बाइक पे हेलमेट लगा है एक लड़का है।

और कुछ आगे एक--

एक एक गाड़ी ठीक करने का सर्विस स्टोर है।

सफेद चादर बिछी है और नीले पीले फूल खिल रहे हैं।

यह बहोत बड़ा फील्ड है और यहाँ पर बहोत सारे--

उस पर पेंट हो रखा है बराबर और सामने--

और यहाँ पर कुर्सी भी पड़ी है सुंदर सुंदर बहोत अच्छे लग रही हैं।

वो बातचीत कर रहे हैं और--

एक बिल्डिंग है वो बहोत सुंदर है उसमें ग्रिल लग रही है और--

ये कपड़े रखने की दुकान है जहाँ पर बहोत नीले--

बहोत सारा गार्डन है गार्डन में बहोत सारे पेड़ लगे हैं।

लगे हैं। नीचे हरियाली छाई है और पीछे बिल्डिंग है। उस पर बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

एक दुकान है दुकान मे बहुत सी चूड़ी बाहर चूड़ी लगी है।

एक लड़का है फुलवाड़ी में वो पानी दे रहा है सुंदर सुंदर बेल लग रही है।

पी_टी कर रहे हैं पी_टी कर रहे हैं इसमें दो --

घर बने हैं वो घर अच्छे लग रहे हैं।

एक होटल है लाल पीले गुब्बारे लगे हैं सुंदर हरी पीली पंखुड़ी--

बनी हुई है और उसके किनारे से अस्पताल भी बना हुआ है।

रखा हुआ है तीन चार आदमी बैठे हैं जिनके मुह पर मास्क लगा हुआ है एक आदमी ने जर्सी पहन रखी है वो कॉफी पी रहा है उसके हाथ मे गिलास है।

एक अस्पताल है और उसके आगे गमले रखे हैं जिस पर नीले पीले फूल खिल रहे हैं।

सामने को ग्राउंड है ग्राउंड में मोटरसाइकिल खड़ी है बराबर में पेड़ खड़ा है।